एक आदमी टोपी लगाए चश्मा लगाए स्वेत कलर की टी-शर्ट पेहने है एक काले कलर का पैन्ट हाथ मे एक लालसा डोरा भी पेहने हुए है।

यहाँ एक किराये वाली बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग मे खिड़कियां दरवाजे लगे हुए है।

सिर पर हेलमेट सेफ्टी जूता भी पहने जाते है जहाँ मशीन को काम करने जाते है उसको पहले चेक किया जाता है लोग पहने जाते है।